सड़क के ऊपर सीढ़ी बनी हुई है।

इस तस्वीर में एक वर्कर कार रिपेयर कर रहा है।

इस तस्वीर में एक नीले रंग का बिल्डिंग दिख रहा है।

इस बैंक के ऊपर एक पोस्टर में एच_डी_एफ_सी बैंक गोपालगंज शाखा लिखा हुआ है।

टेबलों पर टिशू पेपर और वाटर बोतल रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं।

इस कॉलेज के कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं।

गेट के ऊपर लखनऊ मांदेरी इंटरमीडिएट लिखा हुआ है।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

दीवाल पर स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है।

सड़क पर एक लाइट का खंभा लगा हुआ है।

इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी लाइटें भी जल रही हैं।

यहां पर जमीन में बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई है।

यहां पर एक टाइल्स में हरिओम मंदिर लिखा हुआ है।

इस खेत में एक कुआं बना हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां पर तीन मर्करी लाइट जलती हुई दिख रही है।

यहां पर कुछ ऑटो रिक्शा भी दिख रही है।

यहां पर बहुत सारी बाँसें भी दिख रही है जिस पर एक हरे रंग का तिरपाल लगा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां पर एक नीले रंग का डस्टबिन रखा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।